यहाँ पे सफ़ेद और नीला रंग का --

टंगे हुए हैं सूट और श्री गणेश लिखा हुआ है इनके बोर्ड म --